और एक आदमी है जो आईना में फोटो खींच रहा है।

फिर नदी है और नदी के ऊपर एक पोल है।

दुकान है किताब का दुकान है जिसमें बहोत सारी किताब रखा गया है आगे से--

एक नदी है जिसमें बहोत सारे चिल उड़ रहा है।

एक नाव मे दो ही चार आदमी है जो एक चला रहा है।

यह फोड़ने का काम कर रहा है।

टाइल्स जो लोड करके ले जा रहा है।

एक दुकान है जिसमें बहोत सारे सामान रखा है।

एक नदी है नदी में बहोत बरा बरा पत्थल भी है दोनों तरफ से घने-बने जंगल है और आसमान एकदम नीला-नीला सा है।

एक घर है जिसके बहुत सारा खिड़की है आसमानी कलर से पेंट किया है आसमान एकदम नीला नीला है।

एक गो ब्लैक कलर का प्लेट है।

बहुत सारे कुर्सी हैं एक मोटर साइकिल भी है एक आदमी है खारा है साइड में।

एक आदमी है जो बैठा हुआ है और ये कुछ कुर्सी उर्सी भी रखा हुआ है।